हाँ हेल्लो फ्रेंड्स देखियेगा यहा पर काफी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और जिस पे लिखा गया है इंडियन कॉफ़ी हाउस ये कॉफ़ी हाउस है और काफी बड़ा बोर्ड लग यहाँ पर ल दिखाई दे रहा है।

और देखियेगा ऊपर लाइट भी नज़र आ रही है साइड में एक दरवाज़ा भी दिक रहा है और दीवार के पास में देखो बड़ा सा सोफा रखा हुआ है ब्राउन कलर का--

यहाँ पर देखियेगा फ्रेंड्स एक जाली का गेट नज़र आ रहा है दरवाज़ा नज़र आ रहा है और पीछे देखियेगा बड़ी सी बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है काफी जो कि काफी खुबसुतर लग रा है।

यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स एक बराड़ सा हॉल दिख रहा है काफी बड़ा हॉल है उसके सामने देखिये काफी सारे दुकानें नजर आ रही हैं दुकानो के ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है--

काफी सारे दरवाजे दिख रहे जो बिना दरवाजे के जो दीवारों होती हैं वो दिख रही है किले की तरह।

ऊपर देखिएगा काफी सारे जानवरों की ये जो --

चंडीगड़ क़्वालीटी बुक्स सेंटर चंडीगड़ लिखा हुआ है ये बुक्स की दुकान दिखाई दे री ए जो कि काफी खूबसूरत लाग रही है ब्लू कलर लाइटिंग से काफी मस्त लाग रही है दूकान--

और लेडिस और जेंट्स दोनों खड़े हुए है एक नेता जी हैं--

नेता जी नहीं एक पादरी है जिन्होंने चर्र चर्च क्रो प्लस का जो लॉकेट पेन रखा है पादरी जी ने पीछे बाइक दिखाई देरी है।

यहाँ पर देखियेगा फ्रेंड्स काफी सारे फिसल पट्टी दिखाई दे रही हैं बच्चो के लिए फिसलने के लिए ये पार्क दिक पार्क है काफी बड़ा पार्क हे और जो कि बहोत खुबसूरत लगरा है और यहाँ पर सामने देखियेगा बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है पीछे की तरफ--

सामने काफी सारी बोटलें नजर आ रही हैं टिफिन नजर आ रहा है ग्लास नजर आ रही है।

अभी लाशा अभिलाषा लिखा हुआ है बोर्ड पर घर दिखाई देरा है दो मंजिल का ओर काफी बड़ा बोर्ड है जिसपर अभिलाषा लिखा हुआ है और सामने दिखाएगा छोटा सा मैदान दिख रहा है और साइड में देखियेगा बड़ा सा गेट भी नजर आरा है लोहे का उसके पास में एक मकान भी नजर आरा है।

और सामने का लड़का आदमी बेठा हुआ है ट कुर्सी टेबल पर और लाइटे दिखाई दे रही हैं।

यहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जो फी घास-घूस लाग रहे हे काफी बड़ा नही है ये यहाँ पे एक मालगाड़ी दिखाई दे रही है मालगाड़ी दिखाई दे रही है उपर तारे दिखाई देरे बिजली के--

एक दूकान दिखाई दे रही है जिसपे लिखा है बरिस्ता बरिस्ता लिखा हुआ है काच की--

यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स काफी बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है यहाँ पर और यहाँ पर काफी सारी कारे नज़र आ रही हैं।

और ऊपर दिखिएगा नीला-नीला सा आसमान भी नज़र आ रहा है।

यहां देखिएगा फ्रेंड्स एक क्लास रूम नजर आ रहा है काफी बड़ा क्लासरूम है यहां पर और यहां पर काफी सारे बच्चे है जो अपना--